इमेज में एक पुराना किला दिखाई दे रहा है अ किले की दीवारें काली नजर आ रही हैं।

अ हरी घाँस उगी हुई दिखाई दे रही है। अ खम्भों पर लगे लाइट जल रहे हैं।

आँ दो जेंट्स खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक नीले रंग का पानी का ड्रम रखा हुआ है।

इमेज में भगवान् शंकर की प्रतिमा रखी हुई दिखाई दे रही है। आं प्रतिमा के ऊपर एक बल्फ लगा हुआ है। अं पीछे की तरफ रेलिंग लगी है।

वो बना हुआ है। अ चेनेल गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है। अ नो पार्किंग का पोस्टर लगा हुआ है।

अं डिश पर प्याज और टमाटर के लच्छे रखे हुए हैं। एक आधा कटा नींबू रखा हुआ दिख रहा है।

दिखाई दे रही है। झाड़ियों की पत्ती हरे रंग की नजर आ रही है। आसमान सफ़ेद और बिल्कुल साफ नजर आ रहा है।

अं खम्भे लगे हुए हैं। अं पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।